यह एक लाइब्रेरी है | जिसमे काफी लोग पढ़ रहें हैं। यहाँ पर कुछ कम्प्यूटर्स भी रखे हुए हैं।

यह एक जिम है जिसमें कई सारी मशीन दिखाई दे रही हैं।

एक मैदान है जिस के बीच में एक घर दिखाई दे रहा है उसी के आस-पास बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

नीचे पीली मिट्टी दिखाई देती है और घर के ऊपर एक निशन्नी लगी हुई है।

पेट्रोल पंप है। यहाँ पर दो आदमी दिख रहे है उसी के पास मे कुछ बाइक ऑन खड़ी हुई दिख रही है। यहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ दिख रहा है।

दिख रहे हैं यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का पाइप भी दिख रहा है । चारों ओर हरियाली छाई हुई है।

यहाँ पर दो कम्प्यूटर दर्शाए जा रहे हैं। यहाँ पर --